यहाँ पे हरियाली ही हरियाली है हर जहग।

यहाँ पे हर तरह के फल मिल जाएँगे --

बच्चो के खाने-पीने की चीजे है।